ये एक एस बी आई बैंक के बाहर का फोटो है और यहां पर ए.टी.एम. भी है और एक कार भी खड़ी है।

और इसमें असमान भी बहोत खुबसूरत लग रहा है और इसमें नदी में बोहत सारी नाव फिर रही हैं जिसमे लोग घूमते हैं।

ये एक नदी के बोह पास का फ़ोटो है। जो बोहोत अच्छा फ़ोटो लिया गया है और एश के बीच में एक पुल भी जा रहा हैजो बोहोत अच्छा लग रहा है।